अ चर्च को काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है | जिसमें पिंक ब्लू और व्हाइट कलर के बैलूंस लगे हुए हैं ।

चार जन फादर को ऊपर से कवर किये हुए हैं जो जिसमें चार लठ लगाकर खड़े की गये हैं और ऊपर पर्दा बाँधा गया है।

यह एक ची एचडीएफसी बैंक का शाखा है। जहाँ पर बहुत सारे लोग बैंक में अपना काम को कराने के लिए आ रहे हैं और --

यह एक केनरा बैंक का शाखा है जो गोपाल गंज में स्थित है जिसके सामने दो बाई खड़ी हुई है और दो व्यति

झंडे ले कर अब उनकी पूजा कर रहे हैं| यह रस्ता भारती पब्लिक स्कूल का कार्यकम हैं |